एक गोडाउन बना है जो वाइट कलर का है।

एक कार बाहर रखी है जो ब्लैक कलर की है।

जिसमें फ्रॉक है स्कर्ट है टॉप है।

सामने एक पिंक कलर का बोर्ड लगा है जिसपे चिल्ड्रेन्स वेयर होजीयरी लिखा है।

रेड और व्हाइट कलर बलून लगे हैं।

ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है लोहे का।

यहाँ छोटे-छोटे से येलो कलर और ब्लू कलर की जालियों से पैक केबिन बने हुए हैं।

यहां एक पुलिया है जिस पर दो लेडिस जेंट्स खड़े हैं।

दो ब्लू कलर के हैं एक रेड कलर का पैरेट है।

यहां एक कार खड़ी है जो सिल्वर कलर की है।

एक सामने बार पानी की बॉटल रखी है।

दो ने बैग टांग रखे हैं रेड कलर के--

यहां थोड़ी थोड़ी दूर पर मंदिर बने हुए हैं।

सामने एक गा फोर व्हीलर खड़ी है।

यहां पर चार पांच जेंट्स खड़े हैं।

यहां मैदान में घास उगी हुई है।

सामने की दीवार पर बैलून लगे हुए हैं।

और बोहोत सारे टॉवल रखे हैं।

साइड में भी एक बाइक है उसपे जेंट्स बैठा है।

यहां सामने बिस्किट्स के पैकेट रखे हैं।